मछली का बहुत-बड़ा मार्केट दिख रहा है ये लम्बा चोरा दिख रहा है यहां पर सभी सामने मछली बेचते मछली रखी है जो सभी तरह की मछली रखी है----